पीतल का सीन लग रहा है यहाँ ढेर सारे बच्चे और सूचना दे रहा है।

पानी है लग रहा है ये पानी बारिश का है और ये बोहोत अंधेरा है इसलिए की कुछ नहीं दिखाई दे रहा है अंधेरे में दो व्यक्ति एक जग --

खड़ा हुआ है एक औरत एक मर्द जो छुप के जा रहे हैं और कुछ भी--

येलो कलर का है जिस पर नंबर लिखा हुआ है टु वन वन वन और वो गाड़ी बहोत पुराना

यह तो मोटी है यह ड्रेस पहनकर इसमें बहुत स्मार्ट लग रही है और एक--

एक दीवाल है उसके बगल में एक बड़ा सा पिक्चर बनाया हुआ है पेर का और ये बहुत अच्छा लग रहा है और मूर्ति भी बहुत अच्छा लग रहा है।

यह जो वाइट पैंट ब्लैक शर्ट पहना हुआ है वो तकला है उसके बगल में तो बैठा हुआ है जो--

रात का सीन लग रहा है ये बहुत अच्छा लग रहा है एक पंखा है जो बहुत अच्छा है और कुछ नहीं एक शीशा लगा हुआ है।

और दो बड़े सोफे लगे हुए एक कुर्सी लगा हुआ उसके अंदर लाइट भी है वो बहुत अच्छा लग रहा है।

बगल में एक स्कूटी है का नंबर टू वन फाइव स्कूटी का नंबर टू थ्री थ्री वन ।

ये एक कप का दुकान लग रहा है जिसमें ढेर सारा ये कप है ये कप बहुत अच्छा लग रहा है इसमें--

का कलर बैक है क्रेता वाइट है व्हाइट एंड ब्लू है एक पुलिस का गाड़ी है जो--

और दो गेट लगा हुआ है जिसमें दो बच्चे जा रहे है एक बड़ा सा--

दो सौ खिड़की लग रहा है जिसमें पचास खिड़की बंद है पचास खिड़की खुला और उधर का सीन नहीं दिखाई दे रहा है यह धुंधला दिखाई --

ढेर सारे व्यक्ति काम करने जा रहे हैं और एक व्यक्ति ऑयल से बाहर निकल रहा है ऑयल --